मशीन दिख रही है यो योगा करने वाली है ऊपर लाइट जल रही है और भी बहुत सामान है पंखा चल रहा है।

एक जैंट्स बैठा हुआ है और यहां पर एक पेड़ है और एक घर है पोस्टर लग रहे हैं।

और वहाँ पे एक जेंट्स है जो झाड़ू लगा रहा हैं। नीचे जगह पड़ी हुई है बहोत सारी।